पूरा आसमान ह। आसमानवा क एकदम नीला सफेद सफेद आसमान ह। फिर पूरा पानी पानी बहुत बड़ा सा। खूब दूर तक नहर गइल ह।

झुक झुक के डांस करत हैं नियर बैठल है कुल करिया करिया सीढ़ी हैकुल लइका लइकी फोटो आरी आरी पूरा लाल लाल स्टार स्टार बनावल --

दो ठे लाइका करिया पहीनले ह तीन ठे लाईका सफेद पहीनले ह एक ठे लईका ग्रे कलर क पहीनले ह। जौन के एक ठे शीशा में फोटो घिचत ह लाईट तीन ठे जलत ह।

एक बगल में कोई समान ढोने वाली गाड़ी है। बगल में कुछ शीशा ललग हवुए। शीशा सीढ़ी ओकारी आगे एक बड़ा --

एयरहोस्टेल कहल जाला ऊ सफाई एकदम साफ सफाई नीट एंड क्लीन हवाईजहाज वाला लोगो लगल है समान --